यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है यहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है एक बैरीकटेर रखा हुआ है जो येलो कलर का है यहाँ पर एक लाइट का खम्बा दिखाई दे रहा है उसके सामने एक बड़ा-सा बोर्ड लाग हुआ दिखाई दे रहा है।

रेड कलर बोर्ड लगा हुआ है यहां पर